तो मूर्ति सब बनिस हे पता नही--

चिकन बिरयानी का फोटो है।

दरवाजा खुली से हर जगह न्यूज़पेपर और कागज फेकाइसे --